यहां मुझे घड़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे ए एक टेबल दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कुछ कुर्सी दिखाई दे रही हैं।